पार्क के अंदर बहुत सारी हरी भरी घास लगाई गई है।

इस फोटो के अंदर एक रेस्टोरेंट जैसा या पहाड़ जैसा कुछ नजर आ रहा है जहां पर एक आदमी भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

जो कि देखने में बहुत सुंदर और अच्छी लग रही है।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

और एक काले रंग की बाइक भी खड़ी हुई नजर आ रही है।